स्टेज दिखायी दे रही है। यहा पर फुग्गे भी लगे हुवे है।

यहाँ पर एक अंकल दिखाई दे रहे हैं। एक फुल कि माला तंगी हुई दिखाई दे रही है। उसके आगे एक दुकान दिखाई दे रही है। जिसमें कुछ पोस्टर लगा हुआ है।

एक बस में लोग चढ़ते हुए उ जा रहे हैं कुछ लोग चे पैडल जाते हुए दिखाइ दे रहे हैं। एक बिल्डिंग दिखाइ दे रहे हैं एक पेड़ भी दिखाय दे रहे --

यहाँ पर एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग मे निचे एक और इतीन सेड बना हुआ है।

यहां पर रोड में कुछ लोग ढोल बाजे से ढोल बाजे बजा रहे हैं बहोत से लोग जा रहे हैं।

यहाँ पर एक रोड दिखाई दे रहा। रोड पे कुछ आदमी खड़े हुए हैं। रोड पे कुछ खम्मे लगे हुए नजर आ रहें हैं। एक बड़ी सी बाजू में फेक्टरी नजर आ रही है।

यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है। से बुक सेंटर की और यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। गाड़ी के एनन नजर आ रहे हैं और दुकान के बाजु में एक शटर लगी हुई नजर आ --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

कुछ पानी भी दिखायी दे रहा है जहा पर लोग नीचे से ऊपर आ रहे है।